यहाँ पर कवर में रखी दो हार्मोनियम दिखाई दे रही है पानी की बॉटल और एक डिब्बा अ_स्टील का रखा हुआ जो दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर पंखिया रखी हुवी है जो दिखाई दे रही है यहाँ पर एक साइकिल रखी हुवी है जो दिखाई दे रही है यहाँ पर एक स्कूटी रखी हुवी है जो दिखाई दे रही है कुछ बोरिया राखी हुवी है जो दिखाई दे रही हैं ।

नदी के किनारे कुछ पेड़ लगे हुई हैं जो दिखाई दे रहे हैं। हरियाली लगी हुई है जो दिखाई दे रही है एक घर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। अ यहाँ पे एक ग्लास सा बना हुआ है दरवाजा जो दिखाई दे रहा है। यहाँ प --

यहां पर रेल वाले झूले बने हुए है जो कि दिखाई दे रहे है एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ पेड़ लगे हुए है पौधे लगे हुए है जो दिखाई दे रहे है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

कुछ गिलास रखे हुवे है डिब्बा दिखाई दे रहा है यहाँ | टेबल पर एक कपड़ा बचा हुआ है जो दिखाई दे रहा है।